यह एक कमरा दिखाई दे रहा है जिसमे कुछ स्टूल रखे हुए दिखा दे रहे हैं दो लड़के दिखाई दे रहे हैं।

ये रही अधी रखी हुई दिखाई दे रही है जिसका कलर हरा दिखाई दे रहा है |

एक पेट्रोल टैंक दिखाई दे रहा उम्म है कार दिखाई दे रही है रोड दिखाई दे रहा है ऑटोरिक्शा दिखाई दे रहे हैं ठेला दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक मछली की दुकान दिखाई दे रही है बहोत सारी मछलियाँ दिखाई दे रही है पाइप ल दिखाई दे रहा है।